और कोई हेयर कलर करवा रहा है।

ओर ये रिसेप्शन लिस्ट का जगह है ये यहां कंप्यूटर रखा हुआ है एक टी_वी रखा हुआ है ।

पार्टी चल रही है और इसके बाहर--

और एक क वाइट कलर का शर्ट पेहेन के एक फैन फोटो भी ले रहा हैं पीछे की तरफ --

और येलो कलर का सोफा है वो--

के पास ही एक पर्पल शर्ट पेहेन के है और एक --

जैसा कि मैं देख रही हूं ये सामने की तरफ या तो छत या तो बैलकनी लग रहा है किसी बिल्डिंग का--

छोटी छोटी शैंपू भी मिल रही है ब्रश है।

लगी हुई है लाइट्स लगी हुई है बहुत ब्यूटीफुल से और नीट एंड क्लीन रेस्टोरेंट लग रही है।

भगवान की मूर्तिया रखी हुई है काला कलर की बॉक्स रखी हुई हैं।

और इस दीवार में कुछ कुछ सेंटर टीचर सेंटर्स के--

जगह है जहां लिखा हुआ है बाहर में दीपक क्मेस्ट्री क्लासेस --

छोटे से तालाब की तरह पानी जम चुकी है।

और यह वॉटरफॉल ऊपर की तरफ से आ रही है और यह पूरा पहाड़ ब्राउन एं --

और दो सोफे हैं एक टेबल है ब वाटर बोतल है दो व्यक्ति दूसरे से --

एक और व्यक्ति जो खड़े हैं।

में जो डॉक्टर बैठते हैं डॉक्टर का नाम जो--

हॉस्पिटल जो यह प्रोवाइड करता है और यह बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है विश्व वान्वी।

लोहे का गेट दिख रहा है।

ये लड़का सेल्फ़ी ले रहा है सबों की।

कोच भी खड़े हैं इस मैदान में दो बच्चे बैठकर क्रिकेट देख रहे हैं।

और यहाँ मूर्ति पूरी फूल से बहुत खूबसूरत से सजाई गयी हुई हैं --

और वहां पर एक लॅपटॉप रखा हैं रिसेप्शनिस्ट की प्लेस पे --

एक बच्चे ने अलग रंग के कपडे़ पेहने हुए हैं लाल कलड़ के --

जैसा कि मैं देख रही हूं शाम का व--

और यह जो व्यक्ति बैठे हुए हैं यह व्यक्ति का ही मार्केट है फिश मार्केट ।